यहां पे एक सोफा है जिसका कलर र रेड है और नीचे ब्लू और वाइट कलर की कारपेट बिछी हुई हैं।

शिवाजी महाराज के टैचू है जो घोड़े पे बैठे हुए हैं।

दीवारे हैं खिड़कियों में से धूप आ रही है एण्ड नीचे भी लकड़ी की बनाया हुआ है य टेबल नीचे सामान है।

यहाँ पे समंदर पानी है जहां पे कुछ बोर्ड तीन बोर्ड रखे हुए हैं।

कुछ औरतें खड़ी हुई है एक औरत ने वाइट साड़ी पहनी हुई है और बाकियों ने--

ये सेम साड़ियां पहनी हुई है अह ऑरेंज रंग की और पास में हरा घास है और सीढ़ियां हैं और--

एक टेबल और चार कुर्सियाँ रखी हुई हैं एक पुतले दो पुतले हैं जिनको कपड़े पहनाया गया है।

ये नीचे उतरने की सीढ़ियाँ हैं और ऊपर जाने के लिए भीं हैं।

बीच में एक पोस्टर लगाया हुआ है जिसमे कुछ लिखा हुआ है पीछे द दरख्तें हैं कुछ औरतें हाथ में कपास पकड़ी हुई है कुछ नाच रही हैं।

यहां पे लकड़ी का घर है ये जो दो मंजिरा है उसको काफी सारे विंडो नजर आ रही हैं।

नए एक कार है वाइट रंग की पीछे का--

ऑरेंज टी-शर्ट ब्लैक पैंट और नीचे शूज पहना हुआ है हाथ में घड़ी है और पीछे एक वायर है चार्ज का --

जिम का कुछ सामाने है ये दरवाजा है पर्दे हैं खिड़कियां हैं एक आदमी सेल्फी ले रहा है आयने में।